आस-पास काफी सारा कचरा भी दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पर बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है आस-पा --

ओर यहाँ पर आस-पास काफी सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर कुछ लाइटिंग भी लगी हुई है और यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट और नीली कलर की लाइट जलती हुई नजर आ रही है ।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है| इस ब्रिज पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने नीला पैंट और गुलाबी शर्ट पहनी हुई है| उसने चश्मा भी लगाया हुआ है वॉच पहनी हुई है।

यहाँ पर लाइटिंग भी जलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एक अंकल है जिन्होंने वाईट शर्ट नीला पेन्ट पहना हुआ है एण्ड दूसरे ने चोंकी शर्ट नीला पेन्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।